यहाँ पे बहोत ही लोग नमाज पढ़ने आते हैं और यहाँ पर का --

ये एक तेल की दुकान है जहां पर तेल तैयार होता है और यह तेल बहुत ही शुद्ध और प्योर होता है।

और इसमें एक मशीन रखी होती है जिसमें कार्ड लगाने से पैसे निकलते हैं और यहाँ पर एक आदमी बाइक पे --

लगता है कि ये उसी की दुकान है और यहाँ पर एक फ्रिज भी रखा हुआ है जिसमे काफी सारी कोल्ड्रिंके रखी हुई है।

ये एक जिम का फोटो है यहाँ पर बहुत सारे लोग जिम करने आते है।